सड़क की किनारे बंधाहन बैंक लिखा हुआ है और एटीएम मशीन है।

दरवाजा है उसके आस-पास बहुत से मोटरसाइकिल और स्कूटीयां खड़ी है स्कूटी पर एक आदमी--

सामने एक दुकान है और--

पोल बना हुआ है जिसने रास्ता दिखाई दे रहा है गरे और सफेद रंग के टाइलो का इस्तेमाल किया हुआ है और यह--

अन दीवारों पर आदि पर टाइले सफेद रंग।

सड़क पर लाल और ग्रे रंग के टाइल्स लगाई हुई है और एक आदमी वहाँ पर लाल रंग का बैग लिए जा रहा है।

सड़क के किनारे दो लड़किया तस्वीर खिंचवा रही है और उसके हाथ में मोबाइल है उन्होंने काली टी शर्ट पहनी हुई है और खुले बाल--

नीले रंग की पेंट और पूरे रंग का कोट पहना हुआ है साथ में ही ग्रीन कारपेट पर--

एक आदमी नीली शर्ट पहने हुए सेल्फी खींच रहा है और --

सड़क और दुकाने बनी हुई है पुल पर लोहे के--

बहोत सारी एक तीन मंजिलाये इमारते बनी हुई है कुछ भूमि कच्ची है और आधी पर हरे रंग के घा--

एक आदमी पानी की पाईप --